इसमें लोग घूम रहे हैं कोई प्रकार के पौधे वगैरा और ऐसे बहोत प्रकार की चीज है इसमें जैसे की--

ये एक पार्क है इसमें बहोत सारे पो पेड़ पौधे लग रहे हैं इसमें कई लोग टहल रहे हैं इसमें बहुत सारे गमले वगैरा पौ अं रखें हैं।

इसमें आ आदमी सब्जी खरीद रहे हैं कई सब्जियां रखी हैं बहुत सारी गोभी गाजर --

झूले लग रहे हैं इसमें एक बच्चा झूला खेल रहा है पीछे लोग बैठे हैं पेड़-पौधा लग रहे हैं पेड़-पौधा सा लग रहा है और बगीचा-बगीचा जैसा बन रहा है।

और अह रेड कलर का झूला है और ये ग्री येलो कलर की उम्म पाइप है इसमें ग्रीन सी एक झूले की इधर ही टायर है उधर आ --

और इसमें चेयर रखी इधर की साइड में।

पिंक रेड बैगनी कलर बैगनी कलर हो गया और --